टेबल लगे हुए है टेबल पे बहुत से लोग बैठे है लग रहा है खाना खा रहे है।

हरे नारियल के पेड़ तीन है बीच में ग्राउंड है ग्राउंड में आमने सामने--

खेलने के लिए तैयार है लोग खड़े हैं।

मंदिर है मंदिर की सीढ़ियों पर आदमी खड़े हुए हैं आदमी एक आदमी लाइटों को--

लगा रहा है मंदिर में सारे मंदिर में लाइटें लगी हुई है मंदिर के ऊपर लाल रंग का झंडा है साइड में सीढ़ी रखी हैं।

वर्दी पहनी हुई है ये लड़की के बालों में लाल और नीले रंग के छोटे छोटे क्लिप लगे हैं।

ऊपर पीले रंग का कपड़ा लग रहा है साइड में सब ने इनको पकड़ा हुआ है खंभों को।

घर को काफी सज सजाया हुआ है घर मे लाइटें भी रंग बिरंगी लाइटें लगी है रंग बिरंगे फूल लगे है।

खंभों खंभे के आगे दो लड़के बैठे हैं दो दो ग्रुपों में बीच बीच में काफी लोग बैठे हैं।

दो गाड़ी है सड़क पर हैं साइड में--

एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ लग रहा है।

टैंक लगा हुआ हैं सफेद रंग का गेट हैं।

आदमी भी बच्चे भी नजर आ रहे है हरि हर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार उनीस परनाम--

साइड को रास्ता बना है रास्ते में भी सीधे प्ला हरे रंग के प्लांट लगे हैं।

रखी हुई हैं उस दूसरी शेल्फ पर नीले रंग की सफेद लाल रंग की रखी हुई है। सबसे नीचे --

लाल रंग की कार खड़ी है काली की खड़ी है पीछे।